और ऊपर लिखा हुआ है संजीवनी विकास फाउंडेशन एस_बी_आई बैंक का ईमित्र है बाहर साइड में एक बाल्टी पड़ी है।

सामने में एक दुकान है। दुकान के अंदर बहोत सारे कपड़े पड़े हैं।

रूम के अंदर बहुत सारा जिम का सामान है।